यह मैरिज हॉल है और ब्लू कलर का पहने हुए। लड़का चश्मा लगाये हुए और वाइट कलर का शर्ट भी पहना हुआ। ब्लेक कलर का जूता है और उसके पीछे एक गेट है। शीशे का और वाइट वाइट कलर का पूरा है। ग्रीन कलर के कारपेट है बाहर में और रेड कलर के अंदर में कारपेट है।